यहाँ पर एक बड़ी सी दुकान जैसी कुछ नजर आ रही है जिस पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है बड़े-बड़े अक्षरों में।

और इसके अंदर कुछ एक लड़का जैसे दिखाई दे रहा है जिसने व्हाइट कलर पहन रखी है शर्ट ब्लैक पैन्ट पहन रखा है और सीढ़ी जैसी लगी हुई है इस घर के अंदर और इसमें काफी सारे पंखे भी लगे हुए हैं खिड़कियाँ और गेट लगे हुए हैं कुछ।

यहाँ पर मंदिर जैसा कुछ बना हुआ है जिस पर व्हाइट और रेड कलर कुछ लगाया है और ये दी पत्थरों का बनाया गया है ऐसा लग रहा है।

और काफी जैसे बर्तन जैसे कुछ रखा हुआ है ढोलक वोलक काफी सारा समान रखा हुआ है उस अलमारी में बैग वैग जैसा कुछ और दीवाल बिल्कुल सफेद है।

पुल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का काफी बड़ा सा पूल दिखाई दे रहा है जो काफी दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है नीचे पत्थर जैसे पड़े हुए हैं।